एक नया बिल्डिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक बाइक जाती हुई दिख रही है।

यह एक झरने का तस्वीर है यहां काफी ज्यादा पानी ढीला हुआ दिख रहा है।

यहां तीन ए_सी दीवाल पे लगे हुए हैं।

यहां एक प्लस का साइन बना हुआ दिख रहा है यहां काफी सारी खिड़कियां लगी हुई हैं।

बहुत सारे गमलों में पौधे लगे हुए हैं यहां काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पर कुछ गमछे टंगे हुए दिख रहे हैं यहां दो बास्केट में कुछ रखे हुए सामान हैं।

यहां कुछ पिलर्स बने हुए दिख रहे हैं जमीन पर काफी अच्छी टाइल्स लगी हुई है यहां काफी अच्छी रोशनी आ रही है।

यह दुर्गा पूजा का समय प्रतीत हो रहा है मंदिर के अंदर दुर्गा मां की मूर्ति बनी हुई दिख रही है।

एक कुतुब नुमा मीनार जैसा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ पानी बोतल के बंडल रखे हुए हैं एक ग्लास का दरवाजा बना हुआ है।

तीन फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ दिख रहा है बीच में एक लंबा पोल दिखाई दे रहा है।

मॉल में बहुत सारे शर्ट और शेरवानियां हैं।